यह देखिए एक स्कूल है स्कूल के आगे बहुत सारा फील्ड भी है स्कूल का गेट भी लगा हुआ है।

स्कूल के गेट के ऊपर कुछ लिखाया भी है अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

एक बहुत बड़ा फील्ड है फील्ड के अगल बगल में बहोत सारे घर भी हैं बहोत सारे लोग भी हैं।

बहुत सारे अगल बगल में पेड़ पौधे भी--

बच्छा है कुछ बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ निचा में बैठा हुआ है कुछ टोपी पहना हुआ--

यह देखिए एक रूम है रूम के अंदर दो बड़ा-बड़ा मटका भी है एक चूल्हा भी बना हुआ हे एक आदमी है एक गैस चूल्हा भी है।

चर्च है चर्च के बाहर बहोत सारे लोग हैं।

पेड़ पौधे भी है बिजली का खंबा भी है।

यह देखिए एक स्कूल का रूम है स्कूल रूम के अंदर बहुत सारे स्टूल टेबुल भी लगा हुआ है दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

गेट को व्हाइट कलर से रंगा गया है अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे है।